यहाँ सामने तीन लड़के खड़े हुए हैं। तीन लड़के जिम के अंदर हैं। पीछे जिम का बोर्ड लगा हुआ है। सामने लड़के ने हाथ में मोबाइल ले रखा है। नीचे जमीन --

सामने एक छोटा-सा पोस्टर लगा हुआ है। जिसके अंदर अमेरिका इन्साइड आउट लिखा हुआ है।

यहाँ सामने चौड़ी सड़क नजर आ रही है। सामने लोहे के तीन-चार पोल नजर आ रहे हैं। यहां दूर पर एक टीन का शेल्टर नजर आ रहा है। जिस --

नीचे जमीन पर छोटे-छोटे हरे घास लगे हुए हैं। किनारे पर कुछ सुखी लकड़ियां है। सामने से काफी रास्ता नजर आ रहा है।

यहाँ सामने एक बड़ी-सी मूर्ति बनी है। मूर्ति के चारों तरफ गोलेकार का फूल लगाया गया है। यहां सामने एक आदमी सफेद रंग का स्टेज पर खड़ा हुआ है।

सामने एक कमरा नजर आ रहा है। यहाँ सामने खटिया बिछा हुआ है जिसके ऊपर चादर लगा हुआ है और यहां सामने कपड़े रखे हुए हैं। सामने एक कुर्सी है जिसके ऊपर तौलिया है। सामने --

सामने एक बुक सेंटर है। यहाँ पर काफी सारी लोग भीड़ लगाए हुए हैं। यहां रोशनी जल रही है। अंदर पर काफी सारे बुक्स लगी हुई हैं।

यहाँ सामने काफी सारे पत्थर नजर आ रहे। पत्थर के किनारे काफी सूखे-सूखे पत्ते बिखरे हुए है। यहाँ पत्थर पर काई लगी हुई है और छोटे-छोटे पौधे उगे हुए है। सामने एक लड़के का जू --

यहाँ सामने कच्ची सड़क नजर आ रही है। बीच में एक बड़ी-सी बस खड़ी हुई है। किनारे पर काफी बड़े-बड़े मकान नजर आ रहे। पीछे एक बड़ा-सा टॉवर नजर आ रहा है।

किनारे पर काफी सारे पेड़ उगे हुए है। यहाँ बस के पास आदमी खड़ा हुआ है। यहां जमीन पर काफी सारे पर्चे बिखरे हैं।

उसके पीछे एक मैंदान नजर या रहा है। सामने एक बड़ा सा पेड़ नजर या रहा है। मैंदान मे काफी लोग नजर या रहे है।